छत व्हाइट कलर की है।

यामाहा शोरूम जैसा दिखता है।

यह पौधों का शोरूम है।

इसमें एक नई नेक्सा कार सामने की ओर खड़ी हुई है।

और कुछ व्यक्ति अंदर जाते हुए नजर आ रहे--

कुछ व्यक्ति ट्रक के अंदर बैठे हुए हैं।

एक डॉक्टर महिला सामने नजर आ रही--

ठिनेस प्रतियोगिता में दी जाने वाली--

और कुछ मेज भी दिख रही है जिनके ऊपर सफेद टाइल जैसा है।

दो व्यक्ति अंदर जाते हुए दिख रहे--

एक रेड कारपेट बिछी हुई है।